कमरे में एक खिड़की है।

ये तस्वीर एक बड़ा बिल्डिंग का है।

यहां एक आपातकालीन निकास द्वार है।

बेड पर सफेद चादर और दो तकिए हैं।

एक इमारत पीले रंग की है और उसमें भूरे रंग की खिड़कियां है।

बाजार के अंदर एक महिला पिंक कलर की साड़ी में दिखाई दे रहे हैं।

विमान का आगे की लाइट जली हुई है।

व्यक्ति एक कमरे में खड़ा है जो सजा हुआ है।

दुकान के सामने सड़क पर कुछ वाहन भी खड़े हैं।

सड़क के दोनों ओर इमारतें हैं जिनमें से एक भूरे और दूसरी लाल रंग की है।

और सफेद रंग है और कुछ लाइट लगी हुई है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिख रही है।